इस फोटो में एक प्राथमिक उपचार केंद्र को दिखाया गया है जिसके आगे एक साइकल रखी गई है और दो मोटरसाइकिल दिख रही है सामने।

और इसका अ डोर शीशे का बना हुआ है उसके बगल में एक मकान है जो कि बंद पड़ा हुआ है।

जो कि बंबू को सेट कर रहे है इस फोटो में बहोत सारे बंबू निचे पड़े है और बहोत सारे लोग उसे बना रहे है।

और इस फोटो को काफी खूबसूरती से सजाया गया है इस फोटो में दिख रही बिल्डिंग में एक बड़ा सा फूल बनाया गया है जो की साइड में है।

फोटो में इस साइड दीवाल पर एक प्लांट का खूबसूरत सा पेंटिंग लगाया गया हैम और इसमें कलरफुल लाइट --

और इसके दीवार पे बहुत सारे पोस्टर लगे हुए हैं।

यह बिल्डिंग दो लेयर का है इस बिल्डिंग में आगे एक गेट खुला हुआ है।

और सामने एक बड़ा सा सीसा लगा हुआ है जिसमें यह फोटो दिख रहा है।

में टेंट लगा हुआ है और इसके आसपास बहोत सारी घास है और इस ग्राउंड के बगल में भी एक बड़ा सा पेड़ है।